फोर्ड लिखा हुआ है हुंडाई लिखा हुआ है और घड़ी दिखाई दे रही है।

शाॅप पे बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पे--

यहां पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दुकानें दिखाई दे रही है।

यहां एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इच दिखाई दे रहा है और--

यहाँ किवाड़ दिखाई दे रही है।

एक तोलना भी दिखाई दे रहा है।

बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है।

बहोत लोग दिखाई दे रहे हैं चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

टेबल भी दिखाई दे रहें हैं और बर्गर भी दिखाई दे रहें हैं।

यहां पे क्रेट में आलू दिखाई दे रहे है।

एक पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।